libreoffice calc में बुनियादी data मैनिप्यूलेशन पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगे
formula के मूल चीजों का परिचय
columns द्वारा sorting करना
data filtering की मूल बातें
यहाँ हम अपने operating system के रूप में उबंटु लिनक्स version 1004 और libreoffice version 334 का उपयोग कर रहे हैं
चलिए tutorial की शुरुआत करते हैं और libreoffice calc में इस्तेमाल किए जाने वाले बुनियादी formulas के बारे में सीखते हैं
formulas समीकरण हैं जो नम्बर और variables का उपयोग करके परिणाम देता है
spreadsheet में variables cell स्थान होते हैं जो समीकरण पूरा करने के लिए आवश्यक data को रखते हैं
सबसे बुनियादी arithmetic operations जो the जाते हैं वह हैं एडिशन addition सब्ट्रैक्शन subtraction multiplication multiplication और division division
चलिए पहले अपनी personalfinancetracker odsफाइल open करते हैं
चलिए देखते हैं कि कैसे हमारी personal finance tracker ods file में cost heading में बताए खर्चों को कैसे जोड़ें
हम sum total नामक heading miscellaneous के अंतर्गत देते हैं
और हम cell a8 पर click करते हैं और serial number 7 देते हैं
अब cell number c8 पर click करते हैं जहाँ हम costs की कुल संख्या प्रदर्शित करना चाहते हैं
सभी costs को जोड़ने के लिए sum type करते हैं = sum और कोष्ठक में जो columns जोड़ने हैं वो हैं c3 colon c7
अब हम keyboard से enter press करते हैं
आप देखते हैं कि cost के अंतर्गत सभी items जुड़ जाते हैं
calc में सब्ट्रैक्ट कैसे करें यह सीखते हैं
यदि हम house rent और electricity bill का cost सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं और उसे cell a9 में दिखाना चाहते हैं तो पहले cell a9 पर click करें
अब इस cell में type करें = और कोष्ठक में सम्बन्धी cell references जो है c3 minus c4
keyboard पर enter की press करें
हम देखते हैं कि दो cell references में cost सब्ट्रैक्ट होती है और परिणाम cell number a9 में प्रदर्शित होता है
बदलावों को अन्डू करते हैं
उसी तरह हम अलगअलग cells में डिवाइड और multiply कर सकते हैं
spreadsheet में एक और बुनियादी operation है numbers का औसत निकलना यानि average
चलिए देखते हैं कि यह कैसे कार्यान्वित होता हैं
sum total cell के ठीक नीचे heading देते हैं average
यहाँ हम पूरे cost का average प्रदर्शित करना चाहते हैं
अब c9 cell पर click करते हैं
अब हम type करते हैं = average और कोष्ठक में cost
keyboard पर enter की press करें
आप देखते हैं कि cost column का average cell में दिखाई देता है
बदलावों को अन्डू करते हैं
उसी तरह horizontal row के elements का average पता कर सकते हैं
हम advanced level के tutorials में formulae और operators के बारे में ज्यादा सीखेंगे
हम सीखते हैं कि calc spreadsheet में data को कैसे sort करें
sorting करने से sheet में cells को इच्छा अनुसार क्रमबद्ध कर सकते हैं
calc में आप तीन मापदंड तक data sort कर सकते हैं जोकि एक के बाद एक लागू कर सकते हैं
यह सुविधाजनक होते हैं जब आप एक विशिष्ट item खोजना चाहते हैं और यह और सशक्त होता है जब आपके पास filtered हुआ data होता है
मानिए कि आपको costs heading के अंतर्गत जो data है उसे आरोही क्रम में sort करना है
अतः पहले cells जो sorted करने हैं उन्हें चिन्हांकित करते हैं cost cells पर क्लिक करते हैं
अब left mouse button होल्ड करके column के अंत के cell तक drag करें जिसमें 2000 लिखा है
यह column चुनता है जिसे sort करना है
मेन्यूबार में data option पर click करें और फिर sort पर click करें
अब current selection को चुनें
आप sort criteria और options नामक tabs dialog box में देखते हैं
sort criteria टैब में sort by field में cost चुनें
cost को आरोही क्रम में sort करने के लिए ठीक उसके बगल के ascending option पर click करें
अब ok button पर click करें
आप देखते हैं कि column आरोही क्रम में sorted हुआ है
उसी तरह अवरोही क्रम में sort करने के लिए descending पर click करें और फिर ok button पर click करें
बदलावों को अन्डू करते हैं
विविध columns को sort कर सकते है पहले सभी columns को चुनकर और फिर sort options लागू करके ऐसा कर सकते हैं
मानिए कि हमें serial नम्बर और cost दोनों ही sort करने हैं
तो पहले इन columns को चुनिए जैसे हमने पहले किया था
अब हम मेन्यूबार से data option पर click करें और फिर sort option पर click करें
dialog box में sort by field में पहले cost चुनें
फिर then by field से sn चुनें
दोनों options में descending पर click करें और फिर ok button पर click करें
आप देखते हैं कि दोनों headings अवरोही क्रम में सॉर्ट होते हैं
बदलावों को अन्डू करते हैं
अब सीखते हैं कि libreoffice calc में data कैसे filter करते हैं
filter conditions की एक सूची है जो प्रत्येक entry को पूरा करने के लिए प्रदर्शित होती है
spreadsheet में filter लागू करने के लिए itemनामक cell पर click करें
अब मेन्यूबार में data option पर click करें और फिर filter पर click करें
popअप menu में autofilter option पर click करें
headings पर आप arrow चिन्ह देख सकते हैं
item named cell में down arrow पर click करें
अब यदि आप चाहते हैं कि सिर्फ electricity bill से संबंधित data ही प्रदर्शित हो
तो electricity bill option पर click करें
आप देखते है कि electricity bill से संबंधित data ही sheet में प्रदर्शित हुआ है
बचे हुए options filtered हुए हैं
सभी data को देखने के लिए item named cell के डाउन arrow पर फिर से click करें और all पर click करें
हम देखते हैं कि हम अपने लिखे हुए data को अब देख सकते हैं
autofilter के अलावा दो और filter options हैं standard filter और advanced filter जिनके बारे में हम बाद में सीखेंगे
अब हम लिबर ऑफिस calc पर spoken tutorial की समाप्ति की ओर हैं
हमने निम्न सीखा है संक्षेप में
formula के मूल चीजों का परिचय
columns द्वारा sorting करना
data filtering की मूल बातें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
spoken tutorial project team